साथ ही यहाँ पे एक जो वो लगा है उसपे लिखा है रायगढ़ यहाँ पे कुछ बिजली के खंबे वगेरा भी है लोग - बाग बैठे हुए है।

यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक बहोत ही बड़ी बहोत ही बड़ी एक नदी हैं ।

साथ ही स्नैप पेहना एक झंडा जो है लगा हुआ है जिसपे दुर्गा माता का जो है वो हमें दिखाई दे रहा हैं ।

नीला कलर का बस है जिसमें समीर लिखा हुआ है पीछे ऊपर बिजली का तार भी खींचे हुए है साथ ही पीछे कुछ हरा-हरा --

यहाँ पे तीन कुछ अ खंबा-खंबा सा भी जो है उसपे बॉटल रखा हुआ हैं ।

जो लाइटिंग से सजी हुई है साथ ही इसपे कुछ ब्लैक -ब्लैक कलर से डिज़ाइन भी बना हुआ है आदमी का--

और साथ ही इसमें जो है नीचे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ कुर्सियॉँ रखी हुई है जहाँ पे कुछ लोग है कुछ बैठे हुए है कुछ खड़े हुए है।

जैसे यहाँ बैंक पे लिखा है बंधन बैंक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है।

यहाँ पे हम देख सकते है इस इमेज में की इत्ता सारा जो है हमको लोहै-लोहै का चीजे दिख रहा है बड़ा-बड़ा सा यहाँ पे गोल-गोल करके लंबा-लंबा --

यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि एक बहोत ही सुंदर जो है वो इमेज है यहाँ पे जो है एकदम --

रखी हुई है यहाँ पे कुछ पेड़ भी दिख रहे है जहाँ पे कुछ बोरी-बोरी भी लकड़ियों पे रखा हुआ हैं ।